और साड़ी लहंगा भी दिख रहा है इसके अंदर सामने शोरूम के अंदर ये एक शोरूम है पूरा --

इस पे नेम प्लेट भी ऊपर वाल रेड कलर की लगी हुई है।

के अंदर ऊपर वाल व्हाइट कलर की सीलिंग नजर आ रही है जिसमें गोल कलर की लाइट लगी है व्हाइट ।

ऑरेंज कलर का संतरा गोल सा एक दम है भरा हुआ रखा है।

के अंदर छोटे छोटे पत्थर टूटे हुए पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और एक लड़का ये खड़ा हुआ है जो हाथ उठाए हैं ऊपर की ओर।

पूरा मॉल है सामने सीढ़ी एक उतरती हुई नजर आ रही है लिफ्ट जो जिसको कहते हैं।

एक सामने कूलर भी रखा हुआ है। इसके अंदर --

इसके अंदर सामने वॉल पूरा दुकान व्हाइट कलर से पेंट हुई है।

इसके अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है सामने तक के।

नीला बोर्ड नजर आ रहा है बड़ा सा जिसके नीचे छतरी लगी हुई है।

इसके अंदर शीशे नजर आ रहे हैं जो साइड में लगे हुए हैं लाईन से आगे तक के।

एक गोल्डेन काउंटर लगा हुआ है नीले वाले में भी शीशा लगा है गोल्डन वाले में भी शीशा लगा है।

पत्तियां चौड़ी और डंडी वाली हैं इसके अंदर।

इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं पीछे की ओर जो ग्रीन कलर के हैं।

एक रेड कलर का और रेड कलर की जैकेट पहने हुए आदमी है।

एक मंदिर नजर आ रहा है जो सामने की ओर बना हुआ है।

उसी के बगल में एक छोटा सा गेट भी नजर आ रहा है एक बगल में एक और है जिसमें बड़ा सा गेट लगा हुआ है।